बहुत ही बड़ा हॉल है ।

सामने किरन का दुकान दिख रहा है।

नीचे में एक बोरी पे निम्बुं तथा बोहोत सारे टमाटर मिर्ची भी रखे हुएं हैं।

समान भी रखे हुए हैं।